से आदमी कुछ बात कर रहा है।

यह जिम है | यह जिम है | यहाँ सब बॉडी बनाने के लिए आते हैं | हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है |